और यहाँ पर रेड रिबन से नाकाबंदी करी गयी है ताकि अभी कोई अन्दर न जा सके पीछे एक गार्ड अपनी बाइक के साथ दिखाई दे रहे हैं।

पर जादेतर जो छोटी और पतली मिर्च होती है वो ज्यादा तीखी हो --

यह एक क्लास रूम है जिसमे कि ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड दोनों रंग के बोर्ड है यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं पीछे खिड़की भी है।

और इन कुर्सियों कि पन्नी अभी तक नहीं उतारी गयी है क्यूंकि ये बिलकुल नहीं है।